लोहे का शटर व काँच के दरवाजे दिखाई दे रहें हैं। यहाँ पर कटिंग तीस रुपए और शेविंग बीस रुपए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो कि लाल रंग का है यहां पर भगवान की फोटो भी लगी हुई है।